यह एक बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग बहुति ही बड़े है। यह बिल्डिंग अभी करजराथ में है।

यहाँ बहौत सारे लेबर मजदुर काम कर रहे है।

यहाँ एक चाय कॉफ़ी की दुकान है।

यह एक ईस्मारक बना हुआ है। इस ईस्मारक में एक मूर्ति रखे हुए हैं। यह बहुत ही अच्छे दिखते हैं।